इस फोटो में एक बड़ा सा तालाब है इस तरह आपके चारों तरफ बैठने के लिए सीढ़ी बने हुए हैं।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा मस्जिद है।

और इसके सीलिंग का कलर व्हाइट और ग्रे कलर का है इसके वॉल में लाइट्स है।

उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा मस्जिद है।

इसके दूसरी साइड भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे मछलियों को फर्श पे रखा गया।

इस फोटो में एक दुकान है इस दुकान में बहुत सारे रैक --

साथ ही इसमें एक लड़का है।

इस पार्क के साइड साइड में बहुत सारे बड़े और छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

साथ ही इसकी सीलिंग पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

के चारों तेरा बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

हाल में बहुत सारे लोग है जो चेयर पे बैठे हुए है।

के वॉल में बहोत सारे पोस्टर चिपकाए गए हैं।

रेस्टोरेंट में बहुत सारे और चेयर है।

साथ ही इन मछलियों में कुछ छोटे और कुछ बड़े बड़ी मछलियां है।

उसके बगल में कार पार्क है।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट की है इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेबलस और चेयर रखे हुए--

हाल में बहोत सारे लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।